वहां पर बहुत सामान है।

यहां पर एक विद्यालय के बच्चे एक सुंदर सी गतिविधि कर रहे हैं।

दी इलेक्ट्रो निक्स स्टोर है।

और यहां पर हरे रंग का बोर्ड भी है।

यहां पर बहुत प्रकार की साड़ियां रखी हुई हैं जिनमें नीली--

कुर्सियां भी हैं और यहां पर बहुत--

यहां पर कार वॉश करने वाला सेंटर है।

यहां पर एक बहुत बड़ा मैदान --

यहाँ पर एक रोलर कोस्टर है।

यहां पर एक ट्रैक्टर भी है।

यहां पर बहुत ही रश है। हुआ पड़ा है।

बाहर की ओर उन दोनों की फोटो लगी हुई--

जहां पर इसकी प्रमोशन की गई है।

इसमें एक बर्गर और गाड़ी का साइज बना हुआ है और उसे प्रिंट किया गया है।

दूसरा व्यक्ति उसे खरीद रहा है।

यहां पर शीशा भी लगा हुआ है।

जमीन में बना हुआ है और इसके आस पास है बहुत सारे खेत है।

ये फोटो एक हॉस्पिटल की है।

जो ऑपरेशन के काम आता है।

यह फोटो एक ऑफिस की है।

यहां पर ए पी जे अब्दुल कलाम की फोटो लगी है और--

सामने की तरफ एक बड़ा ए_सी लगा है और आस पास में दो लाइट है।

और एक बच्चे ने पीले रंग की बोतल पानी पीने वाली रख रखी है अपने पास।

यहां पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

यहां पर एक बहुत सा सुंदर सा झरना--

यहां पर हरे रंग के संतरे दिखाए गए हैं।

यह फोटो एक एच_डी_एफ_सी बैंक की है।

यहां पर हमें टिकटे प्राप्त होती है।

ऊपर एक जिला विद्यालय निरीक्षक बना हुआ है।

ढोल बनाने का काम करता है।

यहां पर एक हॉस्पिटल --

एक तरफ एक कुर्सी पड़ी है जिस पे--

पर्दे लगे हुए हैं और ये बच्चे पढ़ रहे हैं उनके--